गेरुआ रं रंग है रेल में --

और एक एक्स्ट्रा झोला है वहाँ पे --

एमाँ एक पेड़ लगो हैं मंदिर के बीच में वो नीम का पेड़ है।

और नीचे बहोत सारे फूलन के पेड़ लगे हैं। हरियाली ही हरियाली है नीचे।

पूरे में रेड और बढ़िया मैटी बिछी है नीचे।

और उप्पर झंडे लगे हैं पूरे बिल्डिंग में बढ़िया अच्छा पेंट है पीला पीला कलर का।

एक बेंच बिछी है वहाँ कपडे डले हैं ऊपर से। एक बाइक भी खड़ी है अंत में।

रेलिंग लगी बोहत अच्छी-अच्छी रेलिंग स्टील की रेलिंग लगी है।

कुछ साफी बांध रहे हैं कुछ हँस रहे हैं कुछ सूटर पहने हैं।

लगे हैं। बहोत सारे पेड़ लगे हैं किनारे बहोत बड़ी फील्ड यहां पे ।

पाँच कलर की माला टंगी है इन पे ।

पुरानी बिल्डिंग पुरानी मीनार वगैरह दिखा दी।

लंका लंका के सामने ये मंदिर है शंकर जी का।

एक मंदिर के ऊपर काला-काला सा है लेकिन खम्भा लगे हैं। खम्भा में माइक लगे हैं।

पेड़ भी लगे हैं बहोत सारे और नन्ही चि लाल कलर की टाइल्सें बिछी हैं।

यहाँ एक लड़की दिखाई दे रही है जो पीले सूट पहने हैं और हरे कलर का दुपट्टा डाले हुए है। नीचे हरे कलर का एक तखत रक्खा है छोटा सा तखत।

खिड़की लगे हैं चारो तरफ। जो सेम नीचे बहोत सारे आदमी खड़े हैं। कुछ आदमी गेट के अंदर जा रहे हैं। कुछ बाहर खड़े हैं। ऊपर बादल दिख रहे हैं बहोत अच्छे-अच्छे तार भी लगे हैं। सुबह --

अंदर जाने वाली और ये दक्षिण भारत में दक्षिण बने मंदिर हैं। ऊपर से बादल दिख रहे हैं बहोत अच्छे-अच्छे। पूरे मंदिर में ऊपर तक मीनार बनी हैं।

दो आदमी बैठे हैं। एक आदमी चश्मा लगाए है दोनों के मूंछें है और दोनों सफ़ेद शर्ट पहने हैं जो कि चेकदार सफेद शर्ट है लाइनिंग लाइनिंग और व्हाइट कलर की लाइटें जल रही हैं।